यह एक पुल है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलते रहती है। यहाँ पे लोग --

और यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो की स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाते हैं और उन्हें --